ममम लाइनो वाला आपको वो दिख रहा होगा ग्राउंड और इस ग्राउंड के बिच में एक फाउंटेन आपको दिख रहा होगा फाउंटेन जो ग्रीन --

इसमें आप देख सकते हैं कि किसी मूवी थिएटर का सीन हैजिसमे आप जितनी भी चेयर देख रहे हैं वह रेड कॉलर की है और इसमें आपको एक परदा दिखाई दे रहा है।

और इसमें आप भी चेक कर सकते हैं कि यह किसी मूवी थिएटर के अंदर का सीन है जिसमें सभी लोग मल्टीप्लेक्स बोलते है।

ये मंदिर है जिसके सामने आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही हैं इस मूर्ति में एक मूर्ति एक जो हैं एक मेज के ऊपर रखी गई हैं। इस मूर्ति को--

ये जो नदी है इसके पीछे आप छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी देख सकते हो और सामने आप इस पे तो आप देख सकते हो कुछ पत्थर भी इस पे पड़े हुए हैं जो पानी है वो काफी साफ है।

और इस बाउंड्री के पीछे आप देख सकते हो कि एक ग्राउंड है ग्राउंड के पीछे भी आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और ये काफी सुन्दर--